खम्बें है खम्बों के नीचें कुछ दो लोग खड़े हुए हैं। लोहें के हैं और यहाँ थोडा कबाड़े जैसा कुछ रूम है।

इस पिक्चर में एक एक वृक्ष दिख रहे हैं बहोत सारे और एक जेसीबी --

सारी बनारसी साड़ियां है और यह शॉप में दिख रही हैं। पास में और भी कपड़े रखे हुए हैं।

थोडा-सा येल्लो कलर और अह ऑरेंज कलर का पेंट है और आसमान दिख रहा है।

लिखा हुआ है और आसमान स्काई ब्लू कलर का है और यहाँ पर --

और बहोत यहाँ बृक्ष लगे हुए हैं और पत्तें दिख रहे हैं और यहाँ पे पास में बाउंड्री --